पेपर के ऊपर रेड कलर से तरह तरह के ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है।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

मुझे इस तस्वीर में एक बड़ा सा दिख रहा है।

पीछे में पेड़ सब भी दिखाई दे रहा है।

एक टेबल भी दिख रहा है।

और चेयर के ऊपर कपड़ा दिख रहा है।

ऊपर में फैन भी दिख रहा है।

मुझे इस तस्वीर में एक शूटिंग रूम दिख रहा है।

वॉल की कलर व्हाइट है।

बहुत सारे जर्सी तरह तरह का कलर भी है।

और दो टेबल वुड्स से बनाया हुआ दिख रहा है।

मुझे इस तस्वीर में छ लड़के दिख रहा है।

मुझे इस तस्वीर में एक बड़ा सा रूम दिख रहा है।

वॉल की कलर सफेद रंग है।

मुझे इस तस्वीर में एक फ्लावर दिख रहा है।

साइड में रेड कलर की एक घर भी है और बहुत सारे पेड़ भी है।

बगल में एक दुकान भी है वॉल को बॉक्स में पिंक कलर से पेंट किया जा रहा है।

मनुष्य भी दिख रहा है और पुलिस लिखते हुए भी दिख रहा है।

बाहर में गाड़ी भी देख रहा है।

सामने में तीन मनुष्य भी है येलो कलर के गमला भी दिख रहा है।

और पीछे में वाइट कलर का एक पोस् भी है।

टेबल के ऊपर मिनरल बोतल और टिशू पेपर भी दिख रहा है।

दो मनुष्य भी दिख रहा है।